और र अमम और जग रखा हुआ हैं स्टील का चा छ जग रखा हुआ है स्टील का पाँच और टी_वी लगी दिख रही है टी_वी लगा हुआ है एक भगवान का पोस्टर लगा हुआ है एक घड़ी लगी हुई हैऔर एक पानी का बोतल दिख --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

तस्वीर में एक घर दिखाई दे रहा है दो मंज़िले घर दिखाई दे रहा है जो की जिसकी खिड़कियां दिखाई दे रही है कांच की लगी हुई खिड़कियां हैं।

इस तस्वीर में दो बस दिखाई दे रही है वैन दिखाई दे रही है दो मोटरबाईक दिखाई दे रही है एक बड़ी सी घर दिखाई दे रही है घर का गेट के पास एक आदमी खड़ा है।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

अ दुकान अ दुकान के अंदर बहुत सारे कपडे रखे हुए है दुकान के अंदर लाइट्स जल रहा है और दुकान का गेट जो है वो कांच का है और बहुत सारे कपडे वगैरा रखे हुए है दुकान के अन्दर ये दुकान की तस्वी --

इस तस्वीर में इस तस्वीर में एक ये तस्वीर एक पेट्रोल-पम्प की है जहाँ की एक पेट्रोल-पम्प दिखाई दे रहा है और एक --

तस्वीर में एक म मोटर बाइक दिख रही है बहुत सारी और अ दुकान दिख रहा है दुकान का ऊपर बैनर लगा हुआ है।

अ बैनर रेड और वाईट कलर में लगा हुआ हैं दुकान के जो गेट हैं वो वाईट कलर के लोहे की गेट लगी हुई है छोटी सी और दुकान के अंदर अ अ आ आ दुकान के अन्दर अ अन्दर ब्लैक --